यहां पे बहुत सारे आदमी घूमने के लिए इस पहाड़ पर आते हैं यह पहाड़ में काफी सारे जंगली जानवर भी यहां पे रहते हैं।

कोई एग रोल अंडा वेज बेच रहा हैं सभी यहां बैठ के नाश्ता कर रहे हैं यहां पे बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये एक बस स्टॉप है ये बस स्टॉप में बहुत सारे बसें भी इस स्टॉप में खड़ी है यहाँ पे बहुत सारे आदमी बस में चढ़ने के लिए बस स्टॉप में आते हैं यहाँ पे अपनी यात्रा पे जाते हैं ।

ये मंदिर को बहुत सारे टाइल्स मार्बल मंदिर में बैठाए गए हैं।

यह एक मछली बाजार है इस बाजार में सिर्फ मछली ही बेची जा रही है।

यह एक शिव मंदिर है यह शिव मंदिर बहुत बड़ी है यह शिव मंदिर में बहुत सारे भक्तगण शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते है यह शिव मंदिर बहुत बड़ी है।

इ यह एक नदी है यह नदी में एक नाव खड़ी हैं यह नाव यहाँ पे पानी में चलती है नाव में काफी सारे आदमी बेठे हुए हैं।

आश्रम के मैदान में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यह आश्रम बहुत ही बड़ा --